यह छोटा सा अह बैंक दिखाई पड़ रहा है।

गोल गोल बना हुआ है पुल जैसा और इसमें दो पत्थर के हंस रखे हुए है ऊपर हल्का पहाड़ सा--

और जो नीचे की तरफ कांच में बंद है उसमें भी सामान रखा हुआ है।

जो अभी सही से पूरी तरह से बनी नहीं है उधर एक मकान भी दिखाई पड़ रहा है।

दो चबूतरे पे पेड़ भी उं उं बने हुए हैं।

एक कुंड भी बना हुआ है और चारों तरफ बाउंड्री भी खींची हुई है।

यह एक दुकान दिखाई पड़ रही है इस दुकान में बहुत सारी सीनरी रखी हुई है।

यह एक दुकान दिखाई पड़ रही है इस दुकान में बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं। जो

इस रूम के आगे अं इसमें शीशा बहुत बड़ा लगा हुआ--

यह एक छट्टी माता की पूजा हो रही है जिसमें बहुत सारी महिलाएं--

गुफा में बहुत एक नीचे से जाल जैसी बनाई जाली लगी हुई है।

अ बहुत बड़े बड़े भयंकर से पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं।

और कुछ फेविकोल भी रखे हुए हैं। कुछ गोंद भी रखे हुए हैं।

आदमी ने जैकेट और शर्ट और सफेद कलर की पेंट डाल रखी--

भी नजर आ रहा है एक ऑटो खड़ा हुआ है जिस--

जिन्होंने बिल्कुल अंडरवियर पहन रखी है उस तरफ भी एकदम बिल्कुल साफ पानी दिखाई पड़ रहा है।

में बहुत लोग बाल कटवा रहे हैं और ये आदमी वाला रूम में इसके आगे एक कांच का शीशा लगा हुआ है।

एक रोड भी निकला हुआ है और कुछ पत्थर कंकीड़े पड़े हुए हैं।

पड़ी हुई है उधर भी बहुत सारे रंग बिरंगे बल्फ भी लगे हुए--

इस तरफ एक मकान सा जैसा बना हुआ है और इसमें चारों तरफ एंगल जैसे लगे हुए हैं।

और इधर एक पर्दा भी पड़ा हुआ है। एक आदमी कुछ बाल्टी से औ मग्गे से कुछ निकाल रहा है।

और दो तीन चार जग भी रखे हुए हैं उस तरह भी कुछ टप ओप जैसे रखे हुए हैं।

यह एक होटल नजर आ रहा है इस होटल में दो तीन लोग बैठे खाना खा रहे हैं और--

नंबर भी लिखा हुआ है उस तरफ प पड़ोस में भी एक टीन पड़ी हुई है।

तरफ बहुत सारी लाइट जल रही हुई हैं एक खंभा भी निकला हुआ है और गेट छोटा सा लगा हुआ बहुत अच्छा लग रहा है और अंदर की तरफ फुलवारी भी लगी हुई है।

बिस्किट भी रखे हुए हैं और कुछ डब्बे में बिस्किट हैं।

कलर की है और इधर भी दो कुर्सियां पड़ी हुई हैं और एक बैनर --

सजावट जो है लाल कलर की की गई है और बहुत सारे गमले जैसे रखे हुए हैं।

अ टेबल उसपे पिंक हल्के वैसे पड़ी हुई है कत्थे और सफेद कलर के।

और इधर लाल लाल कल ब्लैक से सजावट की गई है।